यहां कई मोबाइल भी दिख रहे हैं और समान में लाइट भी जल रहा है।

और ऊपर ऐड भी लगा हुआ है कुछ डब्बे चार्जर की भी दिख रहे हैं। राइट साइड में--

बड़े बड़े झाड़ भी नजर आ रहे हैं।

और यहां बगल से इस घर के एक कच्ची रोड जा रहीं हैं।

वहां से एक बैग लटका कर हेलमेट पहन कर आ रहा है।